बनी रहती है। और इससे काफी ज्यादा शरीर में फुर्ती भी होती है और क्रिकेट अभी का सबसे लोकप्रिय गेम बन चुका है। .

है जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा --.

वो हर पार्टी फंक्शन के लिए नया कपड़ा ही --

जोकि मेला खत्म है जो कि यहाँ पे बहुत सारे पुजारी है जो कि श्रद्धालु है जो कि पूजा पाठ है।

करते है अ और अपना मेला घूमते है और अभी के समय में मेला लगता है तो काफ़ी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। और काफी सारे लोग हर्षोल्लास के साथ --

देखने को मिलते है और हम सभी जो है। उसका उपयोग भी करते है और हमे ये सभी फल खाना भी चाहिए जोकि शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है।